मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ फ्लोर्स टाइप में दिख रहे हैं जहाँ पर --

मुझे यहाँ पर कुछ मजदूर दिख रहे हैं जहाँ पर गिट्टी पड़ी है जहाँ पर कुछ इटे हैं ।

उनके सिर पर एक गेट है। जहाँ पर उनकी साइड में एक लड़का है। जहाँ --